इस में चार लोग दिख रहे हैं एक बहुत हल्का सा ही दिख रहा है।

कुछ पिंक कलर में हैं और कुछ थोड़ा सा डार्क पिंक कलर में हैं।

दूर बिल्डिंग है जिसका कलर मे क्रीम और ह लाल रेड कलर का है।

आसपास मशीनें रखी हुई है।

सामने की ओर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है।

जैसे कि कृष्ण जी हैं विष्णु जी हैं साईं बाबा हैं।

बहुत दूर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तांबे के दरवाजा है जो खोला हुआ है।

एक शीशे का दरवाजा लगा--

सामने एक अंकल जो दुल्हन को छुपा रखे हैं ओ भी दिख रहे हैं।

यहां लोग हैं जिनमें से एक ने सर पे गमछा बांधा हुआ है।

एक स्लाइडिंग वाला झूला दिख रहा है।